आदमी है बहुत सारी औरते खड़ी है और कोई बेटा हुआ है दुल्हन दूल्हे के आगे दो कटोरे लखे हुए है।

यहा पे एक आदमी खडा हुआ है और उसके बाजू मे दो ऑटो रखी हुई है।

उस आदमी के पीछे बहुत अच्छे तरीकेसे फूलोसे सजाया गया है उस आदमी ने उसके हात अपने पॉकेट में डाले है।

कुछ आदमी खड़े हुए है बहोत सारे सफ़ेद कलर की माला और लाल कलर की माला भी है।

यहा पे दो बसे खड़ी हु है। बसोंके आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

उपर की तरफ आसमान भी है।

यह एक बस है। ए बस पीले कलर की है। इस बस के आगे एक आदमी खड़ा हुआ है।

उसके हात में एक मोबाइल है जिससे वो अपनी फोटो निकाल रहा है और उस आदमी के हात में एक वॉच भी है।

यहा पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी उसके पैरोकों पकड़के खड़ा है।

यह एक फूलों का बाजार है आजू बाजू में बहुत सारे लोग खड़े हुए है।